कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और टिन शेड ढाल बना हुआ है दुकान का ऊपर से।

यह एक गैरेज है उस गैरेज मे एक कार खड़ी हुई है जो पूरी खराब है उसको सामने से रिपेयर किया जा रहा है।

कुछ कुर्सिया रखी हुई है वहां पे कुछ लोग बैठे भी हुए है एक पोस्ट के लिए ब-बॉक्स रखा हुआ है अ एक मशीन रखी हुई है।